जैसे की अपन यहाँ पर देख पा रहे है यहाँ पर एक फोटो दिया गया है ।

की हमें एक खम्भा दिया गया है और खम्भे के पीछे हमें बहुत सा बड़ा खाली आसमान दिख पा रहे --

जैसे की अपन यहाँ पर देख पा रहे है यहाँ प --

तीन चार पांच अंकल खड़े हुए हम उन्हें देख पा रहे है।